उम्म मंदिर का फाटक --

लेडीज अ पोशाक मि मिलने का दुकान है इसमें इसका कपड़ा जो है बहुत अच्छा क़्वालिटी का होता है लोग दूर-दूर से आकर यहाँ --

इसके दाएं-बाएं बहुत से लोग --

यह है पर्व मुस्लिम का मोहर्रम का पर्व का ताजिया है ।

इस हाथी की बहादुरी यही है की वो --

और वह लड़का भी इत्मिनान से बैठा हुआ है।